और इस फील्ड में बहुत सारे पुरुष हैं।

टैंड पीले और लाल रंग का है।

कुर्सी पर कुछ पुरुष लोग बैठे हुए हैं।

इस ऑफिस के दरवाजे पे गेंदे के फूल लटकाए हुए हैं।

खंभे के बगल में एक फोम का डब्बा रखा हुआ है।

डॉगी ओए लाल कलर से लिखा हुआ है।

इस मस्जिद में पांच हरे रंग का गुंबद बनाया हुआ है।

इस स्टूडियो में बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है।

इस स्टूडियो के बगल में एक प्रज्ञा केंद्र है।

घर को सीटे से छाया हुआ है।

चिकन के बीच में कटोरी में मसाला रखा हुआ है।

इस गेट में उजले रंग से एंट्री लिखा हुआ है।

दो लड़की और दो लड़के डांस कर रहे हैं।

यह एक शादी का स्टेज सजाया हुआ है।

महिलाओं के बीच में फूलों से सजाया हुआ पेड़ है।

एक पुरुष फूल से सजाये हुए पेड़ को एक--

इस घड़ के सामने एक कमरे में लाइट लगाई हुई है।

इस रूम का दीवाल पर काले रंग का पाइप टांगा हुआ है।

इन सभी के बीच में दो कुर्सी रखा हुआ है।

सभी के पीछे का दीवार स्टील और शीशे के बना हुआ है।

एक पुरुष दरवाजा बना रहे हैं।

इस दुकान को उजले रंग से पेंट किया हुआ है।

इस हाल के गेट पे बहोत सारे उजले और नीले रंग के बैलून लगाए हुए हैं।